यह मंदिर है मंदिर में कुछ दिए जल रहे हैं कुछ घंटी भी लगी हुई है।

जैसे मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे कुछ फेरमरबडी या क्रीम्स रखी हुई है। जैसे मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे फेसवॉश भी रखा हुआ हैं और जैसे मैं देख पा रहा हूं--

जैसे मैं देख पा रहा हूं कि एक मॉल है औ जैसे मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे कुछ लाइट्स लगी हुई है।

जैसे में देख पा रहा हूँ कि गेट भी लगा हुआ है और जैसे की में देख पा रहा हूँ कुछ खिड़की भी लगी हुई है और जैसे में देख--

जैसे मैं देख पा रहा हूं कि यह बिल्डिंग का अंदर का सीन दिखाई दे रहा है।

जैसे मैं देख पा रहा हूं की छत के ऊपर टीन लगी हुई है जैसे मैं देख पा रहा हूं कि खंबे खड़े हुए हैं।

जैसे में देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुर्सिया रखी हुई है।

जैसे मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है।

जैसे मैं देख पा रहा हूं कि एक बैनर लगा हुआ है छत पे जैसे मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे शटर भी दिखाई दे रही है जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे स्कूटी --

जैसे मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है।

जैसे मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर दरवाजा भी लगा हुआ है।

जैसे मैं देख पा रहा हूं यहां पे कुछ बल्ली वगैरा लगी हुई है।